मुझे इस तस्वीर में एक जगह दिखाई दे रही है जिसमें मुझे काले रंग की कुर्सी और टेबल नजर आ रही है।

मुझे इधर काफी सारे बेमबू भी दिखाई दे रही है मुझे इधर पिंक कलर --

मुझे इस तस्वीर में काफी सारे मछलियां दिखाई दे रही हैं।

पेड़ भी दिखाई दे रही है।

सामने मुझे काफी सारे इंसान दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में काफी सारे बड़े बड़े घास भी दिखाई दे रहे है और आसमान भी दिखाई दे रहे है।

इधर हमको एक आईना भी दिखाई दे रहा है।

दुकान का अंदर हमको काफी सारे कपड़ा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक मैदान दिखाई दे रही है।